अ बड़ा सा वो कुछ धरा है इसमें जंगले वगैरा भी लग रही है शायद ये किसी ने अपने रहने के लिए बनाया हुआ है दरवाजा भी दिखाई दे रहा है।

झे घास फूस दिखाई दे रहा है और उसके पीछे आप देख सकते हो बहोत सारी कंपनी वगैराह हैं और खंभे लगे हुए हैं खंभों में लोहे की तार वगैराह दिखाई दे रही है।

जो ब्लैक कलर का है बहुत ही अच्छा सोफा दिखाई दे रहा है इसके ऊपर एक बैग रखा है सामने मेज रखा हुआ है और इसके ठीक सामने जो पर्दा लगा हुआ है यहां सिंक वगैरह दिखाई दे रही हैं।

खड़े कर रखी हैं उसके पीछे भी कुछ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है लोहे के पाइप वगैरा से।

इस फोटो में हम देख सको हो इस फोटो में एक आदमी है एक लेडिज है ये किसी पहाड़ पे बैठे है दोनो साइड --

साइड में एक लोहे का पुल भी दिखाई दे रहा है और कुछ टीन वगैरा डली हुई हैं बहुत ही ज्यादा आदमी आए हुए हैं पेड़ पौधे काफी दिखाई दे रहे हैं।

शायद ये कोई लकड़ी कारखाना दिखाई दे रहा है जिसमें--

मौसम प और देख सकते है आप इसके उपर आप काफी जादा साफ सफाई दिखा रही है।

जहां पर काफी जादा समान है जैसे कि कट्टे वगैर पड़े हुए हैं।

कुछ मैदान वगैरा भी दिखाई दे रहा है और ये आप देख रहे है जैसे की--

गजरे बनाने लगा हुआ है और एक बाल्टी रखी है आप देख सकते हैं ये सामने एक येलो कलर की स्कूल बस खड़ी हुई हैं।

और बाउंड्री के पिछले तरफ भी पेड़ पौधे दिखाई दे रहे--

चिड़ि बल्ले रखे हुए हैं और नीचे टी_शर्ट वगैरा रखी हुई है। बच्चों के खेलने के समान है अलाउट वगैरा रखी हुई दिखाई दे लग रही है।